इस दुकान के बाहर एक गाड़ी--

मुझे इस चित्र में एक पेट्रोल --

पंप दिख रहा है जिसमें एक ऑटो वाला और--

के उस साइड बहोत बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

किसी भी तरह का नशा ना करें पार्क के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

मुझे इस चित्र में एक ऑफिस दे--

और बहोत सारे व्यक्ति कम्प्यूटर में काम करते हुए दिख रहे है।

और स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है।

जो सबके लिए दवाइयां लिख रहा है।

रॉक मेन्स पार्लर दिखाई दे रहा है और इसके बाजू में--

खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

जिसमें की बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

मोबाइल की दुकान दिख रही है।